यहाँ लिखा हुआ है वेदांत बुकस वर्ल्ड यहाँ पे --

इसमें अलग-अलग शाखाए है जिसमे लगता है ये बहोत बड़ा कार्यालय है।

यह कॉलेज है कोंडा गाँव जिला का है।

अपने बॉडी अपने जॉय सभी को जैसा हैल्थ रखना चाहते है।